बी महिलाये कुछ अपने मोट बन्ने का नाटक नृत्य चल रहा है। ये ए.सी. कूलर लगाया गया है। डी.जे. है लाइट्स है। उसके बहोत सारे आदमी है।